देख सकते है यहाँ तीन पुरस्कार दिखाई दे रहे है। जो के सिल्वर कलर का है। एक छोटा है। भी है।